ये एक बड़ा सा मॉल है जो की बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा यहाँ मिलता है हम लोग ड्रेस कपड़ा स्वेटर यहीं से खरीदते हैं जीन्स शर्ट बहुत अच्छा रखता है और बहुत लोग यहीं से खरीदते हैं बहुत ही अच्छा रहता है यहाँ का कपड़ा ।

ये एक बड़ा सा ताला अ बड़ा सा समुंद्र है जो की इस समुंद्र में मछ्ली मारने के लिए नाव से गए है और बोहोत बड़ा-बड़ा मछ्ली निकलता है इस समुंद्र में और समुंद्र का मछ्ली खाने में बोहोत अच्छा लगता है बोहोत बड़ा-बड़ा रहता है।

ये एक छोटा सा गैरेज है जो की यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से गाड़ी को बनाया जाता है हमलोग गाड़ी को यहीं बनवाने के लिए लाते हैं बहुत अच्छा लगता है यहाँ गाड़ी बनवाने में हमलोगो को और बहुत लोग आते हैं बनवाने के लिए ।

यह एक बहुत ही अच्छा पेट्रोल टंकी है जो की बहुत अच्छा पेट्रोल डीजल रखते है । हम लोग यही पेट्रोल भराने के लिए आते है । बहुत अच्छा लगता है यह पेट्रोल भराने में और बहुत लोग आते है भराने के लिए बहुत भीड़ होता है इस पेट्रोल टंकी में ।